कुछ लोग यहां पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

दीवार पर एक भारतीय झंडा हमें नजर आ सकता है।

दुकान के अंदर रैक में कुछ डब्बे जमे हुए हैं।

यहां पर हमें एक डिजिटल स्टूडियो और कंप्यूटर ऑनलाइन से संबंधित दुकान नजर आ रही है।

नजदीक में एक बोर्ड है जहां पर सुकुवा ढुकूवा जलप्रपात लिखा हुआ है।

कुछ लेबर हैं जो कंस्ट्रक्शन के काम को अंजाम दे रही है।

यहां पर हमें एक बड़ा सा ऑफिस नजर आ रहा है।

नजदीक में पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा देखी जा सकती है।

यहां पर हमें एक बड़ा ग्रॉसरी स्टोर देखने को मिल रहा है।

एक सफेद रंग की शर्ट पहने व्यक्ति इमारत की तरफ देख रहा है।

एक अन्य व्यक्ति पीछे की ओर देखता हुआ नजर आ सकता है।

रेस्टोरेंट में कुछ टेबल और कुछ सोफे नजर आ सकते हैं।

एक व्यक्ति एक कार को वॉश करते हुए नजर आ सकता है।

बाहर कुछ युवक खड़े हुए देखे जा सकते है।

आसपास मंदिर का परिसर भी देखने को मिल रहा है।